देखिए यहाँ पर लोखंड़ का बना है उस पर एक ताज रखा हुआ है यहाँ रोयल लिखा हुआ है बहुत सारी मशीनें हैं दो मेन --

पाइप का लोखंड का कुछ बना हुआ है जाली जैसा तीन दरवाजा नजर आ रहा है।

देखिए बाजू-बाजू में दो बिल्डिंग दो मंजिला नजर आ रही है दो हौंडा खड़ी हुई है बिल्डिंग के पास दरख्त भी दिख रहा है।

टी-शर्ट बहुत सारी टांगी हुई है और बहुत सारी चीजें दिख रही है टेबल पे कंपूटर वगैरह भी है।

सुरंग है बहुत छोटी सी जगह है अंदर जाने के लिए।

देखिए इस कमरे में दीवार पर बहुत सारे--

देखिए यहाँ पर टेबल और चेयर रखी हुई है।

देखिए यहां पर अधूरा-अधूरा घर बना दिखाई दे रहा है। बहुत सारी भैंस गाय बैठी हुई है।

देखिए यहाँ पर तीन चेयर रखी हुई है एक टेबल के पास दो अलग-अलग टेबल पर बहुत सारी चीजें रखी हुई है।

बहुत सारी बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग के आसपास बहुत सारे दरक्त हैं।

टेबल है चेयर है सामने दूसरे कमरे का दरवाजा नजर आ रहा है टेबल पर कुछ रखा हुआ है।

देखिए ये क्लिनिक है चेयर पर एक डॉक्टर बैठा हुआ है उसके सामने दो आदमी बैठे है।

देखिए इस कमरे में बड़ा सा सोफा रखा हुआ है उसके बाजू में एक चेयर रखी हुई है दीवारों पर कलर किया हुआ है।

एक लड़का वो फत्थर पकड़े खड़ा हुआ है और यहां पर बहोत सारे बड़े बड़े फत्थर भी रखे हुए हैं।

देखिए यहां पर मंदिर दिख रही है मंदिर के बाजू में एक घर बना हुआ है।

ये ऊपर का मंजर है बहुत सारी लेडीज ब्वायज --

देखिए ये बड़ी सी स्कूल है तीन चार मंजिला।

ये दरख्तो पे रंग किया हुआ है बहुत सारे स्टूडर्म बैग टांगे हुए इधर-उधर खड़े हैं।

देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा कबाट कलर किया हुआ रखा हुआ है।

देखिए यह दांत की दुकान है।

बाहर लिखा हुआ हिमांशी डेंटल क्लिनिक --

तालाब के आसपास छोटे बड़े सब पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

घास है पीली-पीली घांस सब नजर आ रही है।

देखिए ये बड़ी सी नदी है इस नदी में एक नाव है।

बेड पर लेटा हुआ है एक डॉक्टर उसके--

यहां रखी हुई है टेबल पर ओ कुछ कुछ सामान रखे हुए हैं दरवाजे दिख रहे हैं।

देखिए यहां पर आसपास दो तीन घर बने हुए हैं घर के बाहर थोड़ी थोड़ी दूर पर--

छोटे बड़े बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं।